पानी की टंकिया भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं जो कि सुनेरी कलर की हैं। यहाँ पर हमें एक खंभा दिखाई दे रहा है।

वहाँ पर हमें बोहोत सारे अ लाइट का स्विच भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमें एक कोरिडोरे दिखाई दे रहा है जहां पर हमें बोहोत सारा दुकाने दिखाई दे रही है।

झूमर दिखाई दे रहा है। वाइट कलर के सोफे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।